ये एक ऑफिस रूम है यहां पे कुछ टेबल के ऊपर कुछ सामान रखा गया है।

यहां पे त्रिमूर्ति ऑटोमैटिक बुल के कुछ लिखा गया है।

पानी दिख रहा है ये एक पार्क है।

म्म बुके सब बहोत सुंदर दिख रहे--

यहां पे कुछ अ कारपेंटर कुछ लकड़ियों पे काम करने के लिए यहां पर बहोत सारे लकड़ियां रखे गए हैं।

यहां एक सोफा तैयार करने के लिए कुछ एसेसरीज लाई--

ये उत्तर में जेरॉक्स पेपर मिल रहा है।

ऑटो बाइक स्कूटी जा रहे है।

यहां पे एक सिस्टम रखा गया है।

एक ऑफिस रूम है यहां पे बहोत सारे लैपटॉप --

ये एक क्रेन है यहां पे बहोत सारे लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं जो कि कुछ लेडिस कुछ जेंट्स है कुछ बच्चे भी हैं।

यहां पे एक आदमी झाड़ू दे रहा है और वो ब्लू कलर का कुछ पहना हुआ है।

और बहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं। दूर में एक बिल्डिंग भी है। सर पे और मे कुछ बांधा हुआ नजर आ रहा है।

व्हाइट कलर ब्लैक कलर ग्रे कलर का डिफरेंट कार --

यहां पे बहोत सारे बच्चे कराटे प्रैक्टिस कर रहे हैं।

एक ब्लैक कलर का स्कूटी है एक रेड कलर का बाइक दिख रहा है और बहोत सारे गाड़ियां हैं यहां पर दिख रहे है।

यहां पर ये बहोत सारा पेड़ दिख रहे--

रखा गया है हरी चटनी और कुछ सलाड भी रखा गया है।

सेल्फी ले रहा है। नीचे मार्बल का कुछ काम चल रहा है।

एक साइड में डेकची दिख रहा है उसके हाथ मे कुछ बनाने के जैसे लग रहा है ऊपर कुछ क्वालिटी लगे हुए हैं खिड़कियां हैं।